लेकिन ये जो तस्वीर है ये तस्वीर एक --

हम इस तस्वीर में देख रहें हैं ये जो तस्वीर है ये तस्वीर एक कॉलेज की तस्वीर है। जहाँ पर की मम्म स्टूडेंट बैठते हैं और यहाँ पर नंबर डल रहे हैं सीट पर --

यहाँ पर् काफ़ी पानी है और कुछ लोग भी है।